यह हॉल जैसा है इसमें बल्ब भी जल रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत पसंद आ रहा है फूल का माला लगाया गया है।

ये रोड पे खड़ा है बस के आगे की तरफ बना कर रखा गया है टाटा लिखा हुआ है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत पसंद है।

यहाँ पे बहुत सारे गमले में पौधा लगाए गए हैं नाव में एक मोटर साइकिल एक स्कूटी खड़ा है।

इसमे आग जैसा लग रहा हैं यहाँ पे बहुत बड़ा बांस का झुंड है ।

एक जेंट्स चश्मा लगाये हुए हैं।

यहाँ पे सुखा पत्ता बिक रहा हैं।

कटिहार लिखा हुआ हैं गेट हैं ग्रिल लगा हुआ हैं